में एक आदमी दिखाई दे रहा है जो बैठा हुआ है और एक बड़ा सा टेबल दिखाई दे रहा है जो मिट्टी कलर का है।

और कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं यहां पर जो खड़े हैं और कुछ मशीने दिखाई दे रही हैं जो व्हाइट कलर की हैं।

और कुछ कुर्सियांए दिखाई दे रही है जो मिट्टी कलर की है और एक टेबल दिखाई दे रहा है जो मिट्टी कलर का है जिसमें कांच लगा हुआ है।

और एक बच्चा दिखाई दे रहा है और कुछ गमले दिखाई दे रहे हैं जो मिट्टी कलर के है जिसमें कुछ पौधे लगे हुए हैं जो ग्रीन कलर के है।

और एक कंप्यूटर दिखाई दे रहा है जो ब्लैक कलर का है और कुछ चेयरें दिखाई दे रही है जो ब्लैक कलर की है।

और एक फैन दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है और बहुत सारे मोबाइल फोन दिखाई दे रहे हैं।

और कुछ लिखा हुआ है जो रेड कलर से लिखा है और कुछ बुके दिखाई दे रही है जो वाइट --

इस इमेज मुझे एक बड़ा सा रूम दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है और रेड कलर का है जिसमें एक खिड़की दिखाई दे रही है।

दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है और एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर काहै।

इस इमेज में मुझे कुछ सामान दिखाई दे रहा है जो रखा हुआ है जिसमें से दो गिटार दिखाई दे रहे हैं जो येलो कलर के हैं और रेड कलर के हैं और ब्लैक कलर के है।

इमेज मुझे दो टोटो दिखाई दे रहे हैं जो ब्लू कलर के हैं और ब्लैक कलर के हैं और ग्रीन कलर के हैं और येलो कलर के --

और कुछ हाथ मे मोमबत्ती दिखाई दे रही है जो येलो कलर की है।

इमेज मुझे एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है और रेड कलर का है और एक लड़का दिखाई दे रहा है जो रेड कलर का वाइट कलर का टी शर्ट पहना हुआ--

कलर के है मिट्टी कलर के है और एक घर दिखाई दे रहा है और बहोत सारे छोटे छोटे घास दिखाई दे रहे है।

में कुछ काचे दिखाई दे रही है और एक गेट दिखाई दे रहा है और कुछ सोफे दिखाई दे रहे हैं जो मिट्टी कलर के हैं।

इस इमेज में मुझे एक घर दिखाई दे रहा है जो रेड कलर का है और ब्लैक कलर का है जिसमें एक गेट दिखाई दे रहा है जिसमें ग्रिल लगा हुआ है।

इस इमेज में मुझे एक बड़ा सा माल दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है और हल्का ग्रीन कलर का है।

इमेज है मुझे एक रूम दिखाई दे रहा है जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर का है और ग्रीन कलर का है।

इमेज में मुझे एक बड़ा सा गार्डन दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे पत्ते दिखाई दे रहे है जो ग्रीन कलर के है।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

इसमें कुछ खिड़कीयाए दिखाई दे रही है जो मिट्टी कलर की है और एक गेट दिखाई दे रहा है।

इमेज में मुझे एक बड़ा सा रूम दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है और येलो कलर का है जिसमें कुछ लाइटें दिखाई दे रही है जो व्हाइट --

और एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जो व्हाइट कलर का है जिसमें ब्लैक कलर से कुछ लिखा हुआ है।

इस इमेज में मुझे बहोत सारी मंदिरें दिखाई दे रही है जो ब्लैक एंड व्हाइट कल की है और कुछ घास दिखाई दे रहे है जो ग्रीन कलर की है और एक--

इमेज है मुझे एक बड़ा सा रोड दिखाई दे रहा है जो ग्रे कलर का है जिसमें कुछ लाइनें बनी हुई हैं जो वाइट कलर की हैं।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

इमेज में मुझे बहोत सारे बिल्डिंगस दिखाई दे रहे हैं जो व्हाइट कलर के हैं जिसमें बहोत सारी खिड़कियांए दिखाई दे रही हैं।

ग्रिल लगा हुआ है जो ब्लैक कलर का है और एक पेड़ दिखाई दे रहा है जो ग्रीन कलर का है और एक दीवार --

दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है और येलो कलर का है जिसमें बहुत सारी ग्रीले लगी हुई है जो ब्लैक --

इमेज में मुझे एक बड़ा सा रूम दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है और हल्का येलो कलर का है।

और एक पोल दिखाई दे रहा है जो ग्रे कलर का है जिसमें बहुत सारी तारें दिखाई दे रही है जो ब्लैक कलर की है और कुछ लड़के दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में मुझे एक पार्क दिखाई दे रहा है जो मिट्टी कलर का है।